पर्ल में व्हाइल और do व्हाइल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में व्हाइल लूप पर्ल में do व्हाइल लूप मैं उबंटु लिनक्स1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
पर्ल में फोर और फोरिच लूप्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल में व्हाइल लूप व्हाइल लूप कोड के ब्लॉक को निष्पादित करता है जबकि कंडिशन ट्रू होती है
व्हाइल लूप के लिए सिंटेक्स निम्न है व्हाइल स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट कोड का भाग निष्पादित होगा जब कंडिशन ट्रू है
क्लोज कर्ली ब्रैकेट अतः क्या होता है यदि कंडिशन संतुष्ट नहीं होती है
फिर व्हाइल लूप कोड को निष्पादित किये बिना एक बार एग्जिट होगा
अब व्हाइल लूप का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट व्हाइललूप डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में whileloopपीएल फाइल खोलेगा
अब निम्न कोड को टाइप करें
हाश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश उ एस र स्लैश बिन स्लैश पर्ल एंटर दबाएँ
डॉलर आई इस इक्वल टो ज़ेरो सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
व्हाइल ओपन ब्रैकेट डॉलर आई लेस थान ओर इक्वल टो फोर क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ और टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ओएफ आई कोलोन डॉलर आई स्लैश एन क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
डॉलर आई प्लस प्लस सेमीकोलों एंटर दबाएँ और क्लोज कर्ली ब्रैकेट मैं व्हाइल लूप को विस्तार से समझाता हूँ
हमने 0पर वेरिएबल आई इनीशिलाइज किया है
अब हमने व्हाइल लूप के लिए कंडिशन i लेस देन ओर इक्वल टू 4 निर्दिष्ट किया है
यदि कंडिशन ट्रू है व्हाइल लूप के अंदर का कोड निष्पादित होगा
अर्थात पहली बार हमारा व्हाइल लूप टर्मिनल पर i 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा
फिर i वेरिएबल आई की वैल्यू 1 से बढेगी
अब फिर से लूप कंडिशन i4 का मूल्यांकन होगा
और आई की वैल्यू 5 होने पर लूप एग्जिट होगा
इस केस में व्हाइल लूप आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 के लिए निष्पादित होगा
फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ
किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें
पर्ल हाइफेन सी व्हाइललूप डॉट पीएल औऱ एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
whileloopपीएल सिंटैक्स ओक क्योंकि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर नहीं है हम पर्ल व्हाइललूप डॉट पीएल को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करेंगे
और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब do व्हाइल लूप देखते हैं
doव्हाइल स्टेटमेंट हमेशा कम से कम एक बार कोड के भाग को निष्पदित करेगा
यह तब कंडिशन को चेक करेगा और लूप को दोहरायेगा जब तक कंडिशन ट्रू है
do व्हाइल लूप के लिए सिंटेक्स निम्न है डीओ स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट कोड का भाग निष्पादित होगा जब कंडिशन ट्रू होती है
क्लोज कर्ली ब्रैकेट फिर स्पेस व्हाइल स्पेस ब्रैकेट्स में कंडीशन औऱ फिर सेमीकॉलन टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट दोव्हिलेलूप डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और फिर एंटर दबाएँ
यह गेडिट में dowhileloopपीएल फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें हाश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश उ एस र स्लैश बिन स्लैश पर्ल एंटर दबाएँ
डॉलर आई इक्वल्स टो ज़ेरो सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
डीओ स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ओएफ आई कोलोन स्पेस डॉलर आई स्लैश एन क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन एंटर दबाएँ डॉलर आई प्लस प्लस सेमीकॉलन एंटर दबाएँ क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस व्हाइल स्पेस ओपन ब्रैकेट डॉलर आई लेस थान ओर इक्वल टो फोर क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन यहाँ do व्हाइल लूप की विस्तार से व्याख्या है
हमने 0 के लिए वेरिएबल आई इनीशिलाइज किया है
पहली बार do व्हाइल लूप बिना कंडिशन चेक किये टर्मिनल पर वैल्यू ओएफ आई कोलोन 0 आउटपुट प्रिंट करेगा
फिर i वेरिएबल आई की वैल्यू 1 से वृद्धि करेगा जब भी लूप निष्पादित होगा
दूसरी बार कंडिशन i लेस थान ओर इक्वल टो 4 चेक होगा
यदि कंडिशन ट्रू है लूप फिर से निष्पादित होगा
हमारे केस में दूसरी बार आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा वैल्यू ओएफ आई कोलोन 1 लूप तब तक निष्पादित होगा जब तक कंडिशन फलसे है अर्थात जब वेरिएबल आई 5 हो जाता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ औऱ किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें पर्ल हाइफेन सी दोव्हिलेलूप डॉट पीएल और एंटर दबाएँ निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
dowhileloopपीएल सिंटैक्स ओक जैसे कि यहाँ कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स नहीं है हम अब पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे
टाइप करें पर्ल दोव्हिलेलूप डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब व्हाइल और do व्हाइल लूप के बीच वास्तविक अंतर देखते हैं
टर्मिनल खोलें टाइप करें गेडिट लूप डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ यह गेडिट में लूप डॉट पीएल फाइल खोलेगा
अब दिखाए गये कोड के भाग को टाइप करें
हमने एक वेरिएबल काउंट घोषित किया है और यह जीरो पर इनीशिलाइज किया
व्हाइल लूप कंडिशन में हम चेक कर रहे हैं यदि वेरिएबल काउंट शून्य से बडा है
कंडिशन ट्रू नहीं है
अतः व्हाइल लूप कोड एक बार भी निष्पादित नहीं होगा
doव्हाइल लूप में हम पहले कोड को निष्पादित कर रहे हैं और फिर कंडिशन चेक कर रहे हैं
तो कोड कम से कम एक बार निष्पादित होगा
फिर कंडिशन चाहे वेरिएबल काउंट जीरो से बडा है यह चेक हो गया है
कंडिशन ट्रू नहीं है
तो लूप एग्जिट होगा
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स को चेक करने के लिए निम्न को टाइप करें
पर्ल हाइफेन सी लूप डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
लूप डॉट पीएल सिंटैक्स ओक जैसे कि यहाँ कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स नहीं है तो पर्ल लूप डॉट पीएल को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करते हैं
और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
आई एएम इन do व्हाइल लूप यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई आउटपुट मैसेज आई एएम इन व्हाइल लूप प्रदर्शित नहीं हो रहा है
यह मैसेज था कि हमने व्हाइल लूप के अंदर क्या प्रिंट किया था
इस का अर्थ है कि do व्हाइल लूप कम से कम कंडिशन का मूल्यांकन करके से पहले निष्पादित होता है
जबकि व्हाइल लूप एक बार भी निष्पादित नहीं हुआ है जब कंडिशन फलसे निर्दिष्ट होती है
मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा
व्हाइल और do व्हाइल लूप्स के बारे में बस इतना ही
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके पर्ल में व्हाइल लूप और do व्हाइल लूप यहाँ आपके लिए नियत कार्य है प्रिंट करें हेलो पर्ल वेरिएबल की गणना 10 होने तक
व्हाइल औऱ do व्हाइल लूप्स का उपयोग करके निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करने और देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें